इस चित्र में एक फिश मार्केट को दर्शाया गया है।

सभी कपड़े को प्लास्टिक में कवर करके रखा गया है।

पीछे के साइड में हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाएं गए है।

मंडप का रंग हल्दी और सफेद दिया गया है।

यहां पर टीना का बाउंड्री भी बनाया गया है।

पीछे के साइड में एक बंद किया हुआ दुकान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक फुलवारी को दर्शाया गया है।

यहां पर बिजली के खंभे और तार भी दिखाई दे रहे हैं।

इस गेट का रंग लाल दिखाई दे रहा है।